एंड यहाँ पे कुछ बड़े बड़े अ प्लांट्स भी दिखाए गए है एण्ड स्काए दिखाये गए है वाइट कलर --

इसके अलावा नीचे हमको कुछ लोग खड़े हुए दिखाए गए है एक लड़की है जो स्कूटी पे बैठी हुई--

एक कार हैं जो रेड कलर की हैं हमें पीछे बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई गई हैं इसके पास एक स्टेचू भी लगा हुआ हैं और यहाँ पर स्काई दिखाया गया हैं अ हमे यहाँ पे बिजली के कुछ तार--

ऊपर हमें कुछ डेकोरेशनस दिखाई गई है एण्ड स्काय भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का पर्पल कलर का एण्ड ब्लू कलर का हमें यहाँ पे नजर आ रहा हैं।